धोती पेजामा पहने हुए कोई लाल साड़ी पहने हुए कुछ लोग नॉर्मल ड्रेस में चल रहे हैं।

शर्ट दिख रही जो कि नीले कलर की सफ़ेद कलर --

पत्थर दिख रहें हैं पत्थर के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने नीली सी टी शर्ट पहना हुआ है लाल बैग टंगा हुआ है एक बीच में और --

एक बड़ा सा रूम दिख रहा है रूम की दिवलो का रंग पीला है एक गेट है गेट से लोग आते हुए दिख रहें हैं।

दो-तीन महिलाएँ दिखाई रही जो कि सफेद साड़ी पहने हुए आस-पास उनके पुरुष खड़े हए हैं एक पर्दा दिखाई जा रहा है जो की चॉकलेट कलर का है। --

पेड़ और दिख रहा है इसके पत्तती का रंग भी हरा है सब तरफ कार ही कार दिख रही है कुछ व्यक्ति दिख रहें हैं बड़ी बिल्डिंग है।

कुछ इस तरफ जा रही है कुछ उस तरफ जा रही है चारो तरफ रैंदी झाड़ भी ले --

बड़ा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में भोत सारे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है एक टीन के हाउस दिखरा हुआ है।

किताबे रखे हुए ऊपर भी चित्र बना हुआ एक इंसान का एक साइड में भी चित्र है बीच में दीवाल सफ़ेद रंग की है नीचे फर्श है।

आस-पास भी पेड़ हैं आगे बड़े से पेड़ हैं रोड दिखाई दे रही है चारो तरफ बड़े-बड़े पेड़े लगे हुए हैं।

बिजली के खम्बे दिख रहें हैं एक लेडीज का हाथ दिख रहा है जिसने साड़ी पहनी हुई है सफ़ेद कलर की चारो तरफ सफ़ेद आसमान रोड दिख --

पंखा लगा हुआ है बहुत साड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अंदर भी चीज़ रखी है बाहार भी चीजें रखी हुईं।

हरा है पानी का बेहता हुआ पानी भी हरा दिख रहा है।

झरने में पांव डूबे हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं चारो तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक मैदान दिख रहा है चारो तरफ बड़ा पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप कि नीचे दिखाई दे रही है पेड़-पौधे दिख रहें हैंचारो तरफ --

इक शॉपिंग मॉल दिख रहा है जिसमें बहोत सारे जनरल समान रखें हुए है चाय बिस्कीट ।